फोटो खिंचवा रहे हैं। देख रहे हैं की चर्च जो है कि देखने में बोहोत ही चर्च में कितने सारे आदमी जो है कि यहां खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हैं कि बहुत सारे आदमी खड़े होकर अपना फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कितने सारे बच्चे और बड़े आदमी जो है कि यहाँ पे खड़े हुए हैं।

लग रहा और यहाँ देख रहे यहाँ सभी कम्पनी बल्ले जो है की मौजूद और यहाँ देख रहे हर तरह के हर कलर मे जो है के बॉल मौजूद है और यहाँ देख रहे बल्ला जो देखने मे बहुत ही --

बहुत बिल्डिंग है। देखने बेहत खूबसूरत लग रही है। यहां ये कार कार भी लगा हुआ है जो के व्हाइट कलर का और ये देखने में बेहत खूबसूरत लग रहा है। ये बिल्डिंग जो है काफी खूबसूरत लग रही है। ये देखने यहां के नजारे को देखते हुए बहुत आनंद आ रहा है। लोग जो है की बहुत ही आनंद के साथ खड़े हुए हैं।

जो की यहां बहुत सारे भक्तगण आये हुए है पूजा करने के लिए जो की अंदर लोग पूजा कर रहे हैं। कुछ बाहर में खड़े होकर के देख रहे हैं और ये देखने में का --